ये दुकानें नजर आ रही है और यहां पर ऊपर नाम भी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में एक हॉल दिखाई दे रहा है यहां पर रंगीन सोफे नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर नीम के पत्ते भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में नर्सरी दिखाई दे रही है और गमलों में काफी पौधे लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और यहां पर साइड में पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बंगला दिखाई दे रहा हैं जिसका गेट खुला है और लाइटे जलती नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर जिम दिखाई दे रही है जहां पर एक्सरसाइज करने की मशीनें रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर खिलौने की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर काफी सारे टॉय नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर एक लड़का रेड टी शर्ट पहने खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर ऑफिस दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल और कुर्सी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर हॉल दिखाई दे रहा है और नीचे टाइल्स में सुंदर सी डिजाइन भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है कुछ लोग बैठे हैं और दुकाने भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर दुकान दिखाई रही हैं जहां पर काफी सारा सामान जमा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर सीढ़ी दिखाई दे रही है और आस पास कुछ झाड़ियां भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर पेट्रोल और रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहां पर एक स्टेडियम दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा सीढ़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर फोटो दिखाई दे रही हैं जहां पर टेबल कुर्सी रखी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर एक ए_टी_म दिखाई दे रहा है और कुछ लोग पैसे निकालते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है और काफी सारी दुकाने नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर अह गैलरी दिखाई दे रही है जहां पर गेट और गंदे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है। जहां पर गेट और पर्दा नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर पूजा चलती दिखाई दे रही है और कुछ लोग औरतें पूजा करती नज़र आ रही है।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

इस इमेज में यहां पे भीड़ नजर आ रही है और कुछ लोग कतारों में दिखाई दे रहे हैं।